उसके बगल में कुछ किताबें और कुछ और पोस्टर लगाये गये है।

यहां सामने में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने हॉफ टी शर्ट पहना हुआ है।

सामने में कुछ कॉपी और कुछ किताबें रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे क्रीम के डब्बे और फेस वॉश भी रखे हुए हैं ।

ऊपर में बहुत सारे कलश रखे हुए हैं।

यहां पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

एक पुतला लड़की का है और एक पुतला लड़का का है।

सामने में देवघर लिखा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप का चित्र है।

इसके बगल में चारों तरफ ब्लू कलर का तिरपाल भी लगा दिया गया है।

यह एक ढाबा का चित्र है जिसका नाम मां तारा ढाबा लिखा हुआ है।

सामने में एक घर भी दिखाई दे रहा हैं जो सफेद कलर का है।

दिवाल के ऊपर कुछ बैलून भी लगे हुए हैं जो रेड और ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बालकनी का चित्र है।

यहां सामने में कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और कुछ खंभे भी गढ़े हुए हैं जिससे बिजली पार की गई है।

यहां ऊपर में एक पंखा लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे गेंदा के फूल लगे हुए हैं जो अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक घर दिखाइ दे रहा है जिसके नीचे बहुत सारे फूल सजाए गए हैं।

एक हरा कलर का दिखाई दे रहा है और एक रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

उसके साइड में एक फैन और एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

दुकान के अंदर बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है।